तीन लोग हैं दो महिलायें एक पुरुष ये लगा हुआ है ढोलक है।

और ये व्यक्ति काट रहा है ये दुकान है शीशा लगा हुआ है और कुर्सी पड़ी हुई है।

यहाँ पाँच छः डोर है शादी हो रही है फ़ोटो खींचा रहे हैं। सफेद कलर की ड्रेस पहने हुए हैं माला डाले हुए है।